और लाल रंग की जैकेट पहनी है।

यहाँ हमें एक बुक स्टोर नजर आ रही है जहाँ काउंटर पे और अलमारी पे बहुत सारी बुक्स रखी हुई हैं।

यहा हमे एक डाक घर की तस्वीर दिखाई पड़ रही है।

यहा पे हमे संतरे भी नजर आ रहे हैं।